पीछे एक पेड़ भी नजर आ रहा है जो कि बहुत बड़ा है।

नाव में झंडे कई लोग नाव से में बैठ के घूम भी रहे है।

यह जिम की तस्वीर लग रही है जहाँ आदमी जीम करने के लिए आया हुआ --

इसमें बहुत तरह के पौधे नजर आ रहे है एक लाल कलर के कुर्सी भी रखी हुई है ।